यहाँ पर हमें एक लड़की डम्मी के रूप में खड़ी हुए दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें पानी दिखाई दे रहा है। पानी मे दो लेडी दो लड़कियाँ नहाते हुए दिखाई दे रही है।

इस बस में एक ग्रीन कलर की मैट बिछी हुई है । सामने रेड कलर का कुछ डाला हुआ दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसके बाल ऊँचे है और ये ब्लैक कलर की टशर्ट पहने हुए है और सामने।

रखा हुआ है। लेटर ब डालने का और श्रीं शायद वो एक लड़का बैठा हुआ है जो येलो कलर की टीशर्ट पहने हुए दिखाई दे रहा है।

तीन आदमी आये हैं एक लड़का है जो पीछे बैग को टाँगे हुए है।

पर हमें आसमान नीला और दिख रहा है और हमें नीचे जो रे रोड दिखाई दे रही है। फोर लाइन रोड है।

ये हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है। यह मंदिर की डिजाइन बहुत सुंदर दिख रही है। एक प्रवेश द्वार दिख --

मछली कुछ ब्लैक हैं। कुछ व्हाइट हैं। एक रे येलो कलर का कैरट रखा हुआ है।

यहां पर हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर में बहुत सारे हमे प्रवेश द्वार जैसे डिजाइन बने हुए दिखाई दे रही है। एक प्रवेश द्वार भी दिख रहा है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है।